जहाँ पे झूमर टंगा दिखाई दे रहा है एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक लड़का बैठा दिखाई दे रहा है।

दिख रही है जिस में बहुत सारा सफेद कलर का पानी दिख रहा है इसमें मशीने दिख रही है इसमें सफेद कलर का बादल भी दिख रहा है मशीन का कलर वाइट दिख रहा है इसमें--

गुफा दिखाई दे रही है इसमें कुछ पोस्टर लगा दिखाई दे रहा है उसमे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहा है इसमें सफेद कलर का बादल भी दिख रहा है इसमे--